यह नदी का सीन है । जिसमे फवारे लगे हुए है जिसमे अनेक प्रकार की लइटें लगी हुई है । नीली पिली हरी लाल पिली लगी हुई है । ऊची ऊची फवारे लगे --

इ समे से पानी निकलते हुए जा रहा है। इसमें लइटें भी लगी हुई है ।

ऊ ऊपर का बैकग्राउन्ड भूरे कलर का है और इसमें एक बलफ लगा हुआ है और नीचे ग्रीन कलर का के टाइल्स हैं।

इसकी दीवारें वाइट कलर की हैं इसके चारों ओर शीशे हैं।

एक जिम जैसा लग रहा है। जिसमें एक व्यक्ति लेटा - लेटा हुआ है।

यह जिम है जिसमें मिरर लगा हुआ है और काफी मशीन रखी हुई हैं।

है उसमे की टहनियाँ लम्बी लम्बी है और हरी पतिया है।